हेलो दोस्तों यह दृश्य स्टेशनरी की शॉप का है जहाँ पर किताबें कॉपियां पेन पेंसिल आदि रखे हुए है।

यहाँ पर कुछ लोग बाहर खडे हुए है तथा कुछ अंदर एटीएम से पैसा निकाल रहे है के बगल मे मैथमेटिक्स क्लास है।

जिस पर से एक बांध गया हुआ है उस बांध पर बहुत से लोग रास्ता पार कर रहे है तथा एक पुल भी बना हुआ है और नदी में एक नाव भी खड़ी हुई है।

उसने अपने दोनों हाथ फैला रखे हैं तथा नदी का पानी ज्यादा गहरा नहीं है।

नमस्कार दोस्तों यह दृश्य एस.बी.आई. बैंक का है तथा ए.टी.एम. --

पूरे लॉन फूलों से सजा हुआ है तथा बाहर दो आदमी बैठे हुए रखवाली कर रहे हैं।

तथा सभी लोगों ने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे हैं तथा वह आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं।

नमस्कार दोस्तों यद दृश्य किसी पूजा स्थल का प्रतीत होता है जिस मैं गुरु जैन --

आ रहे हैं तथा आसपास कई लोग हैं और दो लड़कियां उनके आगे मोमबत्ती लेकर चल रही है।

नमस्कार दोस्तों यह दृश्य मछली मंडी का है।